जो अपना एक सेल्फी ले रहे है काफी अच्छे तरह से ।

होटल में दो ठो खिड़की लगाए है जो काफी अच्छे तरह से पेंट किया है होटल के बहार एक बालकनी है।

शोरूम में एक बहुत बड़ा सा हॉल है।